एक साइकिल रखी हुई है एक एंट्री गेट है उसके अगल-बगल भी एक-एक गेट है।

बिल्डिंग में बैंक का ए.टी.एम. लगा हुआ है जो कि चौबीस घंटे चालू रहता है।

एक दुल्हन खड़ी हुई है एक दूल्हा खड़ा हुआ है सजे हुए हैं।

उस गुफा पे एक पत्थर रखा हुआ है कई चट्टानें आसपास लगी हुई हैं।

यह एक रिपेरिंग वर्क शॉप है।

और वाइट कलर का पर्दा है।